बीच मे दो पोल दिखाई दे रहे हैं पोलो का कलर ऊपर से व्हाइट है नीचे से नीला है ऊपर छत का कलर व्हाइट है।

इसके पास में भी और शॉप है।

ट्यूबलाइट्स है बल्ब दिखाई दे रहे है ऊपर मोटर रखी हुई है सामने एक कुर्सी रखी हुई है फेरकी की घड़ियां दिखाई दे रही है बहोत सारा समान रखा हुआ है शॉप के अंदर --

यहां एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक व्यक्ति पैसे निकल रहा है एक व्यक्ति ए_टी_एम के बाहर पैसे लेकर निकल रहा है।

सभी बेड लगे हुए हैं अंदर लाइटे जल रही है ऊपर पंखे चल रहे हैं यहां सामने एक पेड़--